ये एक दुकान है जिस पर एक कैलकुलेटर रखा है लीड कॉपी भी रखा हुआ है।

और बहुत सारे बॉक्स रखा हुआ हैऔर यहां पे--

काउंटर से दिखाई दे रहा है और यहां पर खेरी भी दिखाई दे रहा है जिस पर भी टाइल्स लगा हुआ है।

और बोरा यहां पे गाड़ी पर लोड हो रहा है और मास्क आदमी तीन चार आदमी लगाए हुए बोरा लोड कर रहे है।

जो बहुत सारे रंग की है और आगे दुकान है ठेका--

कुछ ब्लैक लौक रहा है आदमी हाथ से जिम उठा रहा है चश्मा पहने हुए हैं और जिम कर रहे हैं जिम बॉल सभी थोड़ा-थोड़ा लौक रहा है।

ये बारा सा ग्राउंड हैजिसमें एक आदमी टी-शर्ट वाइट कलर का ब्लैक कलर का पेंट पेन का खड़ा है और बीच में जाली लगा हुआ है उस साइड भी--

उजला दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधा सभी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे लाइट्स ऊपर है ब्लैक कलर का घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे घर ढला रहा है बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं।

उम्म मिस्ट्री से काम कर रहे हैं पली बिछा रहे हैं यहां पे छ ढला रहा है।

यह एक रूम है जिसमें मशीन धरा गया है।

और यहां पे मशीन भी दिखाई दे रहा है चार्जर भी दिखाई दे रहा है बोर्ड भी घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर से--

यहां पे जय माला हो रहा है जिसके बीचों बीच कनिया बरवा खड़ा है आपस में माला पहन रहे हैं।

पटाखे और लाइट सा दिखाई दे रहे हैं हवा में उड़ते हुए--

और डी भी नाम लिखा भी दिखाई दे रहा है और यहां पे चार्जर भी लगा हुआ है बोर्ड में यह भी दिखाई दे रहा है बोतल से भी धरा हुआ है।

बहुत सारे खुर्सी से लाइनने से टेबल भी रखा गया है बहुत सारा झिमनर्स वगेरा है।

ये एक दुकान हैजिस पर लिखा है कोका कोला लिखा है रेड से--

आसमान का रंग थोड़ा-थोड़ा नीला दिखाई दे रहा हैवाइट। वि --

यह दुकान हैजहां पर मांस मछली से बिक रहा है दो आदमी आपस में काट कर भेज रहे हैंऔर बहुत सारा कार्स लगा हुआ है बाहर --

बाहर जाली छाई हुई बाहर देखने को मिल रहा है।

और वो चेयर कलर टाइल्स बराबर हैसब वाइट कलर का --

और यहां पे पोस्टर में भी जिम का चित्र दिया गया है यहां पे एल_सी_डी भी लगा हैवो ब्लैक कलर का--

यह बहुत बड़ा सा घर है जिसमें बहुत सारे लाइट्स लगा हुआ है और यहां खंभा भी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो मोटरसाइकिल है एक स्कूटर है एक हीरो का मोटरसाइकिल है इस हीरो का मोटरसाइकिल में हेलमेट टंगा हुआ है।

और यहां पे ग्रिल लगा हुआ है यह पोस्टर सटा हुआ है इस मकान का रंग लाड कलर है आसमान का रंग बीछ दिखाई दे रहा है इस साइड थोड़ा तार दिखाई दे रहा है।

और भाई तीन चार आदमी आपस में सामान ले रहे हैं चावल का बोरा सा भी दिखता है दुकान बहुत सामान सा है दुकान के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

ये एक रूम है जिसमें लाइट बढ़ रहा है रेड कलर का पंखा भी लगा हुआ है और चेयर सब लगा हुआ हैऔर काउंटर सब दिखाई दे रहा है।

ये एक पार्क है पार्क में बहुत सारा पेड़ पौधा हरियाली छाई हुई है नीम के पत्ता सभी दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

यहां पे हमारे देश का तिरंगा लौक रहा है आसमान का रंग विच्छेद दिखाई दे रहा है यहां पे इसके सामने पेड़ दिख रहा है और खाली खेत सब दिख रहा है।

एक दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान सब है सारी उड़ी सब है।

और ब्लू कलर का एक सिरी भी है कपड़ा उतारने के लिए दो राइट भी बढ़ रहे हैं।

एक दुकान है जो दवा का दुकान है यहां पे डॉक्टर मार्क्स लगाए हुए हैंऔर कार्टून धरे हैं।

पीछे घेरा हुआ दिखाई दे रहा है सारी रेड कलर का खांबा दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर का है और के पीला कलर से नंबर प्लेट लिखा है सतत्तर असि --

ये एक पार्क हैजिसमें बैठ एक आदमी नीचे बैठे हुए हैंऔर इससे बैठने वाला भी बनाया गया हैबहुत सारे पेड़ पौधेसा है।

रत्ता बितर पौदा सेल रेऔर यहाँ पे एक बोर्ड हैजैसा लग रहा है।

ये एक बड़ा सा दुकान हैजिसके अंदर बहुत सारा लाइट सा बर रहा है और आगे--

बटा हुआ है यहां पर मोटरसाइकिल भी लगा है बुलेट भी लगा हुआ है।

स्कूटरी भी लगा हुआ हैशीशा की शीशा लगा हुआ है गेट में और खेरी से दिखाई दे रहा है और अंदर बहुत छोटे एक महान आदमी के दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर का आसमान का रंग उजला है पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।